काफी सुंदर लग रहा यह किसी शादी के लिए या किसी रिसेप्शन के लिए सजाया गया है।

आपके फोर व्हीलर गाड़ी के लिए भी सामान यहां पे उपलब्ध हो जाता--

काफी अच्छे से इनके रथ को सजाया गया है काफी सुंदर से सजाया गया है।

और ये अह उसके बगल में काफी सारे घर दिख रहे हैं।

बॉउंड्री है बॉन्डरी किया हुआ मंदिर पे ध्वजा लगा हुआ है कुछ वृक्षे है कुछ घासे हैं कुछ सूखे गाछ भी हैं यहां कोई आदमी नहीं नजर आ रहा--

दो तीन मजदूरे हैं कोई हथौड़ी लिए हुए भी हैं और कोई दिख नहीं रहा है कुछ मशीन लेकर के काट भी रहे हैं।